ढाबा बहुत छोटा सा दिख रहा है ढाबा के आसपास कुछ पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

यहां पर कुछ लोग ए.टी.एम. से पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं।

ए.टी.एम. में एक पुलिस वाला भी दिख रहा है बाहर एक कांच का दु कांच का दरवाजा भी है।

पीछे ही एक चार पहिए वाली गाड़ी भी दिख रही है।

यहाँ पर बच्चो के खेलने के बहुत सारे बड़े बड़े झूले नज़र आ रहे हैं यहाँ पर चार पहिए के झूले भी नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर दो व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं और दो व्यक्ति वाहन पर चल --

ये इमारत के आस-पास बहोत सारी भीड़ दिख रही है और एक चार पहिए वाली गाड़ी भी दिख रही है।

ऊपर सफेद रंग की बत्तियां जलती नजर आ रही है और पीछे एक काले रंग का कपड़े का पर्दा दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं यह --

रिक्शे रिक्शा में तीन पहिए भी है रिक्शा के आसपास कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहें हैं।

यहाँ पर दो लोग एक घर के आगे खड़े नजर आ रहे हैं।

यहां पर चार-चार महिलाएं लोग नीचे बैठी हुई नजर रही है| इनके सामने एक बड़ा-सा कांच भी है।